इसमें बोहुत सारे सामान रखा हुआ है। दो बड़े फुटबॉल रखे हुये ऐं ।

स्लाइड लगी हुई है जिस पे बच्चे स्लाइड कर रहे हैं जिसने काली रंग की टीशर्ट पहन रखी है।

पीछे दीवार पे एक सीनरी बनी हुई है जिस पे इटालियन लिखा हुआ है।

दीवार के हरी घास लगी हुई है पीछे बड़े हरे पेड़ लगे हैं।